इसे बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरोंका इस्तेमाल किया गया है यहाँ हम आसपास बहुत सारे पेड़ पोधे भी देख पा रहे है। देखने मैं ये जगह कोई घूमने की लग रही है यह काफी रोमांचक लग रहा है।

बड़े ही सुंदर तरीकेसे इसे बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे की कोई घूमने की जगह है। हमे यहाँ पर एक आदमी भी दिख रहा है।

दृष्य एक ठेले का दृश है जहा पर हमे बहुत सारी सब्जिय राखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर हम बहुत सारे टमाटर देख पा रह है इनमें से कुछ टमाटर लाल लाल है।

दुकान का दृश है जहा पर हम एक तार पे बहुत सारी समान टंगी हुई देख पा रहे है जिनमे कूछ हमे मसाले नजर आ रहे है।

बहुत ही तेज हमारी आँखों पर लग रही है ये दृश देख कर ऐसा लग रहा है जैसे की ये श्याम का दृश्य है ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा है।

हमें हमे एक लोहेका गेट दिखाई दे रहा है इसे नीले रंग से रंगा गया है यहाँ पर हमे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

देखने मे ये क्लासरूम काफी बड़ा है और ये काफी अच्छा भी लग रहा है।